और साथ ही बच्चे यहां एक्सरसाइज और योगा करने आते हैं।

और ये बहोत अच्छा योगा का प्लेस है।

यहाँ पर एक काउंटर के लिए भी टेबल है और यहाँ के सारे टेबल कुर्सियाँ लकड़ी से बनी हुई है।

मकान है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है और साथ ही यहां पर एक ट्रैक्टर और कुछ गाड़ियां खड़ी हैं।

तो यहां पे आप देख सकते हैं एक पल रोड है।

यह एक लकड़ी की दुकान बनाने वाली जगह है यहां पर लकड़ियों को।

होटल गेटवे कर्नाटका लिखा हुआ है।

कुछ ड्रोज में थैलियाँ आदि बाहर पंखा पड़ा है जो कि बहुत शांत है जो चल नहीं रहा।

यह एक आदमी घूमने के लिए आया है।

ब्लू ग्रीन येलो और रेड ये काफी--

घना और बड़ा पेड़ भी है।

और कुछ लोग गार्डन में बैठे हुए हैं।

और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है।

गाड़ी पर नंबर प्लेट भी लगी है।

जहां ब्लू व्हाइट और ग्रे कलर की एक्टिवा पड़ी है।

जोकी बहोत अच्छा भी होता है।

जहां सारी मिठाई अच्छी रहती है।

जहां शादी की बारात निकल रही है।

कि यहां ढेर सारे गुब्बारे लगाए गए हैं।

यह तो एक पर्दे की शॉप है जहां पर दो से तीन कलर के मुझे पर्दे दिख रहे हैं।

एशियन पेंट का बोर्ड लगा है।

कलर का एक बड़ा और मोटा टायर लगा हुआ--